चित्र में एक कैफे दिख रहे हैं और जिसमें फैन लगी हुई है और तीन आदमी भी दिखाई दे रही है।

एक पोल नजर आ रही है एक साइकल नजर आ रही है।

और बाल्टी भी दिखाई दे रही है जो प्लास्टिक का है और उसका कलर ग्रीन है।

बेसिन भी दिखाई दे रही है।

घर भी नजर आ रहे है।

बहोत सारे लोग भी नजर आ रहे और कपड़ा भी नजर आ रहा है और एक बाल्टी भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे बहुत सारी मशीनें भी नजर आ रही हैं।